यहाँ पे एक घर सजा हुआ है काफी बड़ा है यहाँ लाइट भी लगी हुई हैं यहाँ पे फूलों से सजावट की गई है।

यहाँ पे एक मेज भी है जो लकड़ी की है। यहाँ पे एक पर्दे भूरे रंग के पड़े हुए हैं। दीवाल सफेद रंग की दिखाई पड़ रही है।

यहाँ पे एक औरत कुर्सी पे बेठी हुई है सामने एक कैंटीन भी है।

जो काले रंग के हैं यहाँ पे बहुत से घर बने हुए हैं जो पीले और हरे रंग के हैं। यहाँ पर बहुत कूड़ा कचड़ा फैला हुआ है यहाँ पे --

यहाँ पे एक ऑटो खड़ा है जो लाल रंग का है। यहाँ पे एक औरत और आदमी खड़े हैं जो चाबी एक दूसरे को पकड़ा रहे हैं। यहाँ पे एक स्कूटी की दुकान है।

यहाँ पे एक गाड़ी की सर्विसिंग चल रही है यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत मशीन पड़ी हुई हैं यहाँ पे --